दृश्य में एक रूम दिखाई दे रही है।

और घास पौधे भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी नजर आ रही है।

जिसकी कलर ग्रीन है और कुछ फूल पौधे भी लगाए हुए हैं।

और तार भी नजर आ रहा है।

दृश्य में एक शॉप की तस्वीर नजर आ रही है।

वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में मोबाइल है।

दुल्हन रेड कलर की लहंगा पहनी हुई है।

यहां पे रेक बना करके बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

और उसपे बिजली की तार भी नजर आ रही है।

इस समय एक मस्जिद की तस्वीर नजर आ रही है।

ऊपर बने हुए हैं और तार भी नजर आ रही है।

दृश्य में एक बस स्टैंड का फोटो नजर आ रहा है।

और ऊपर कुछ डिज़ाइनें भी बनी हुई नजर आ रही--

इस में छत बनती हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ बोरियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक रेड कलर की बाल्टी भी नजर आ रही है।

और कुछ आदमी बैठे हुए हैं सोफा भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बिल्डिंग नजर आ रही है।

दृश्य में एक रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

दृश्य में पत्थर नजर आ रहे हैं।